यहां पे बहोत सुंदर स्कूटीयां रखी हुई हैं यहां सस्ती डिस्काउंट में स्कूटीयां मिलती हैं यहां पे बहोत से लड़के खड़े हैं।

यहां पे एक लड़का खड़ा है जो इंजीनियर है और यह घर बना रहा है यहां पास में ये कट्टा भी पड़ा है और यहां पे लोहे की सरिए भी रखे हुए है।

यह एक मेडिकल शॉप है यहां पे बहोत सारी गाड़ियां भी है और यहां डॉक्टर होबड़े की सीनरी भी लगी हुई है।

के पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं बहुत सुंदर डिजाइन से घर बनाया गया है लंबा चौड़ा हटा कटा है यहां आस पास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा --

समुंदर पुन की तरह दिखाई दे रहा है दूसरे खांचे में गुलाब से भरा हुआ दिखाई दे रहा है और तीसरे खांचे में प्लेन पानी दिखाया गया है।

यहां पे आस पास कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा है यहां हर तरीके के घर दिखाए गए हैं।

लगी हुई है और पेड़ भी ब्राउन कलर और ग्रीन कलर का है पाइप भी जुड़ा हुआ है इसके साथ।

यह रेड कलर का है और यहां दो लड़के भी खड़े है जो सीढ़ियां चढ़ के अंदर जाने की रहे है।

रेड कलर की टॉर्च लगी हुई है यहां पे एक स्विच भी है और ये कंकाल पे ऑक्सीजन का मास्क भी लगा रखा है।